लाल कलर में पोताई किया हुआ है रॉयल है।

लाल एवं सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

बड़े केले के पत्तों से सजाया गया है और--

एक नीले कलर का बड़ा सा--

यह एक हॉस्पिटल है जिसका नाम--

यह जंगल सा प्रतीत होता।